ये काफी खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है। काफी शानदार पार्किंग मोटरसाइकिल व गाड़ी खड़ी है।

बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और म्म बहुत ही अच्छा कपड़ा है।

यहाँ पर और राहगीर लोग रहते हे बोहोत अच्छे ढंग से --

हवा के जैसे पेड़ पर लग रहा है।

बार बार तराजू के जैसे एक दो ठो बच्चे लोगो के लिए खेलने के लिए बना हुआ है।

नहाने वाला स्विमिंग पूल कलर दे --